इस दृश्य में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं।

दुकान में बहोत सारे डब्बे टंगे हुए हैं कपड़े मोज़े टंगे हुए हैं चड्डी टगी हुई है शर्ट टगी हुई है।

उसके ऊपर बहुत सारे कुरकुरे चिप्स मैगी के पैकेट रखें हुए हैं।

सामने की तरफ एक झंडा भी दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर पे बैठा हुआ एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उसके बगल में एक घर सटा हुआ है।

इस दृश्य में हमें खुला प्रकाश दिखाई दे रहा है।